यहाँ पर जेन्स दिखायी दे रहे हैं। एक लेडिस दिखायी दे रही है जो कुर्सी पकड़ी है। यहाँ पर पन्नी टंगी दिखायी दे रही है।